फेक पोल है जिसमे दो लाइटे जली हुई है फेक आदमी है जो साइकिल चला के जा रहा है फेक कार है जो रोड के उस पार जा रहा है जो हल्के--

और साइड में एक छोटा सा घर है। एक प कुर्सी दिख रहा है जो प्लास्टिक का भी है।